इसमें मुझे टेस्ला लिखा दिख रहा है।

इसमें मुझे टर्निंल लिखा दिख रहा है।

इसमें मुझे पेड़ दिख रहे हैं।

इसमें मुझे टाइल्स दिख रही है।

इसमें मुझे मोक्ती लिखा दिख रहा है।

इसमें मुझे कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन दिख रहा है।

इसमें मुझे कटोरिया रखी दिख रही हैं।

मुझे इसमें बड़ा हॉल दिख रहा है।

मुझे इसमें कुछ लोग दिख रहें हैं।

इसमें मुझे बाहर मीटर लगा दिख रहा हैं।

इसमें मुझे श्वास्तिक बना दिख रहा है।

इसमें मुझे बहोत सारे ड्रॉज़ दिख रहे हैं।

इसमें मुझे दो लोग दिख रहे हैं।

इसमें मुझे एक रूम दिख रहा है।

इसमें मुझे एक नांव दिख रही है।